साइड मे कुछ फैन लटके हुए दिखाई दे रहे है सामने एक शोकेस दिखाई दे रहा हैं जिसमे कुछ सामान रखा दिखाई दे रहा हैं। पीछे एक पंखा दिखाई --

और एक आदमी खडा हुआ है उसने चष्मा लगाया हुआ है हाथ में एक मशीन ली हुई है उसकी पीठ पर कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है सामने दिखाई दे रही है।